नीचे में दो दुकान बनाए हुए हैं एक का शटर खुला है एक का बंद है।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

पीछे स्टार बनाया हुआ है उसके अंदर एक मूर्ति है और दो गमले रखे गए हैं।

तस्वीर में सामने एक काउंटर बनाया हुआ है टेबल लगाया हुआ है।

इस तस्वीर में सामने एक पिकअप खड़ा है जिसपे चार पाँच डी_जे लगाएं हुएं हैं।

पीछे एक एम_पी थियेटर जैसा बनाया हुआ है और टेंटे भी लगाई हुई हैं।

इस तस्वीर में सामने एक बड़ा सा गाड़ी खड़ा है जो की लाल कलर का है।

यहां पे एक बेड लगाया हुआ है और यहां पे दो कुर्सी भी लगाया हुआ है।

तकिया का जो कवर का कलर है वो पर्पल कलर का है।

इस तस्वीर में सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं।

और डॉल हाउस सेट भी और यहां पे सामने कैक्टस का है खिलौना पिचकारियां नीचे बैट बॉल ।